एक बड़ा ग्राउन्ड नजर आ रहा है जिसमे छोटे छोटे पेड़ पोधे उगते दिखाई दे रहे हैं मिट्टी दिखाई दे रही है खरपतबार है साइड मै बड़ी बिल्डिंग भी बनती हुयी नजर आ रही है जिसपे एक सज्जन खड़े हुए हैं ।

एक कार खड़ी हुई है उधर से एक कार आती हुई दिखाई दे रही है एक साइकिल खड़ी है एक मोटर साइकिल खड़ी हुई है।

फूलों की बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है जिसमे रंग बिरंगे की फूलों की मालाए लटकती हुई नजर आ रहे हैं इनमें लाइट्स भी लटक रही हैं नजर आ रहे हैं।

ये दुकान दिखाई दे रही है जिसमें

एक कार जोन दिखाई दे रहा है जिसमें एक कार खड़ी हुई है और थोड़ी दूर दो-तीन कार और खड़ी हुई है एक कार सामने से लाइट जलाती हुई आती हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं बाउंड्री के उस तरफ मकान दिखाई दे रहे है पेड़-पौधे दिखा रहा है आसमान दिखा रहा है।

गार्डन दिख रहा है इसमें बड़े-बड़े वृक्ष दिख रहे हैं छोटे-छोटे गमलाओं में पौधे भी नजर आ रहे है इसमें फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा वृक्ष दिख रहा है साइड में बिल्डिंग भी दिख रही --

थोड़ी दूर पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे एक नेटवर्क टावर दिखाई दे रहा है वृक्ष दिखा रहें हैं आसमान दिखा रहे बिजली के तार--